और बहुत सारे चीज है यहाँ एक राजमहल की गंगा है।

यह एक एल.सी.डी. टी.वी. है एल.जी. टी.वी. है और यह चोबीस इंच का है और उसके नीचे में बहुत सारे टी.वी. है और यह एल.जी. कम्पनी का दुकान हैं।

यह एक कस्तूरवा गाँधी बलिका उधवा साहेबगंज --